यह एक दुकान है और दुकान के अंदर बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

चार्जर कोड भी यहां पे अवेलेबल है सामने एक बहौत बड़ी सी घड़ी दिखाई दे रही है।

सामने एक एम_आई का शॉप है वो ओपन है सर्विस सेंटर है।

दो ठो दो पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे फ्लावर --

ये घरेलू रेस्टोरेंट है काफी क्लीन भी है बहुत सारे लाइट भी रंग बिरंगी लगे हुए हैं।

स्टीकर मारकर सब चीज अवेलेबल है।

एक आदमी चढ़ रहा है सबसे नीचे एक आदमी सबसे ऊपर चढ़ के खड़ा है।